यह एक मस्जिद दिखाई दे रही है। मस्जिद मे पठान लोग आते है। यहा नमाज पढ़ा जाता है। बोहोत सारे लोग बेठे हुए है।

लोग यहाँ मरीज़ को लाते ले जाते रहते है बहोत आ अ अ अगल-बगल में पेड़-पौधे दिखाई दे रही है बहोत सुन्दर दिख रहे है लोग यहाँ रहते है आते जाते--

बहोत बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रही हैं और छोटा-छोटा हरा भरा घास भी है बीच में रास्ते भी दिखाई दे रही हैं और अच्छे से लग रहा है बहुत सुन्दर दे रहे।

फर्श जैसा बना हुआ है और बिल्डिंग बहोत है छोटे छोटे मकान बना हुआ है उसमें आते जाते रहते है सुंदर दिखाई दे रही है।

बहुत सुन्दर से पुताई हुआ है बहुत अच्छे से दिख रहे खिड़की दरवाजे भी लगा हुआ है यहा लोग रहने रहते है बहुत सुन्दर से दिखाई दे रह--